और ऊपर बहोत बड़े-बड़े पेड़-पौधें --

हम्म जिसपर फूलों के गुलदस्ते लगे हुए हैं। बहोत ही सुंदर फूल हैं।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

पीला है। सामने से एक व्यक्ति आ रहा है जिसने क सफ़ेद कलर की शर्ट पहनी हुई है। कुछ व्यक्ति आ रहे हैं और कुछ व्यक्ति जा रहे हैं। मेले में बहोत --

और अदृश्य महसूस हो रहे हैं।

और सामने एक शोकेस बना हुवा है जो कांच का बना हुआ है जो बहोत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। जिसके ऊपर बहोत सारी बर्निया दिखाई दे रही हैं। सामने एक ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ है। एक व्यक्ति दुकान के अंदर खड़ा है। जिसने चेक्स वाली --

यहाँ पर शेल्टिंग सा डला हुआ है जिसके अंदर व्यक्ति खड़े हुए खेल का आनंद ले रहे है। सामने हमें खेल के मैदान में हरी-भरी घास दिखाई दे रही है और पूरा स्टेडियम बना हुआ है।

लाल है। उपर इसका कलर गुलाबी है और उसके ऊपर एक गुम्बद लगा हुआ है जो सोने के कलर का है। मंदिर के सामने एक बड़ा गेट एवं छोटा गेट लगा है जो लोहे का है। उसका कलर --

तभी मंदिर के चारों तरफ बोहोत ही बड़े-बड़े --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

कुछ खड़े हैं और कुछ आ रहे हैं और कुछ जा --

इस तस्वीर में हमें एक ंम डिस्को दिखाई दे रहा है जिसमें बहोत सारी शराब की बोटलें और बहोत सारे --

एक काँच का बने हुए गेट लगे है जो बहोत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। अंदर बहोत सारी आलमारी दिखाई दे रही हैं जिनमें हर तरह की बुक दिखाई --

जिनमें ऊपर एक बोर्ड लगा हुवा है जिसमें एक रेड कलर से मेनका ड्राई क्लीनर्स लिखा हुवा है।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

अ खेल का मैदान है। जिसमे बहुत सारे खिलाडी अपने खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। आसपास बहुत छ सुंदर सुंदर --

इस तस्वीर में हमें ए दिखाई दे रही है यह किसी बेकरी की तस्वीर है जिसमें बोहोत सारे मसालें --

और टीन शेड के उपर कुछ सजावट की गई है। सामने नीचे कुछ बोर्ड --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

ऊपर शेड लगी हुई हैं जो सफ़ेद कलर से बनी हुई हैं और कुछ बिजली की तारों को --

अई त तार लगे हुए हैं। साम नीचे एक टायर --